जिसपे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं टेबलें भी रखी हुई हैं।

जिसके फ्रंट पे एक मॉल बना हुआ है।

जिसके बाहर एक महिला दिखाई--

और बी_ए बी कॉम एम_ए की बुकें मिलती है।

एक पाइपी दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लैक --

जिसके अंदर बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आजीवन में काम आने वाली वस्तुएं रखी हुई हैं जैसे --